यहाँ एक ल एक बच्चे को सन्मान इ सन्मानित किया जा रहा हे.

लेडीज वस्त्रालय की दुकान है बाहर कुछ आदमी है.

बोहोत अच्छा केक हे मीठा लगेगा खाने मे.

जो टाई बेल्ट सब कोट पैंट जार के बैठे हुए हैं कुर्सी पर.

जैसे ये सकार्पिओ हो सकता हे.

नंबर प्लेट लगाया नहीं गया है.

एक पेड़ है बगल में घर है।

आदमी बैठा है किनारे बालू पर.

ये सीमेंट का दूकान हे.

और सीढ़ी है चढ़ने के लिए।

एक आदमी औरत बैठे हैं जा रहे हैं झोला लटकाया हुआ है.

माखदूम अश-अशरफ टाइल्स मार्बल हे.

एक पिकअप जा रहा है.

इसमें बहुत सारा केला दिखाई दे रहा है।

यह एक दुकान हैं दुकान में ढेर सारा किताब और कॉपी हैं.

दुकान में ढेर सारा सामान है।

काउंटर पे ढेर सारा सामान रखा गया है.